घर टीने के बनाए हुए हैं।

इस तस्वीर में एंट्रेंस ग्रीन बोर्ड पर ओपेन जिम लिखा हुआ है।

ग्रीन बोर्ड पर हिंदी से व्यायाम शाला लिखा हुआ है।

ऐ_सी और फैन भी हैं।

मिठाई की दुकान के बगल पर शू के शॉप पर है।

घर ब्राउन कलर की दिख रही है।

दूसरे ने चेक चेक और त तीसरी ने सफेद रंग के कपड़े पहनी है।

ऊपर एक वेइट मशीन लगाई हुई है।

घर ब्लू और ऑरेंज कलर में पेंट की गई है।

हला रंग का कुर्सी भी है।

बहोत सारे कुर्सियां और टेबल्स हैं।

जहां बहुत सारे लोग लाइन लगाए हुए हैं।

चाय वाला पिंक कलर का शर्ट पहने हुए हैं।

चाय के तपरी के आगे चार कलर चार पिंक कलर की बोतल रखी हुई हैं।

उसके बगल पर दो बल्ब लगाए हुए हैं।

इस तस्वीर पर एक बड़े से रेस्टोरेंट दिख रहे है।

विंडो पर दो सफेद रंग का कर्टंस भी दिख रहे है।

एंट्रेंस के सामने काला रंग का तीन चेयर है।

यहां दो बड़े बड़े कुर्सी दिख रहे हैं।

सफेद रंग का वॉल क्लॉक भी दिख रही है।